मिट्टी दिखाई दे रही है घास और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

चप्पल पहनी है हाथ मे फोन है मास्क लगाया हुआ है।